डी.वी. पब्लिक स्कूल का हिस बाहर का हिस्सा है जिसके नीचे बहुत सारी दुकाने हैं इधर सेंट्रल कर के कोई दुकान है इधर अंकल एक गाड़ी लेके जा रहे हैं इधर साइकिल भी खड़ी हुई है।

ये बी.सी.सी कर के कोई जगह है जिसके बाहर का हिस्सा है बीच में जाली वाला गेट लगा हुआ है जाली-वाली विंडो लगी हुई है बोहोत सारी सीढ़ियाँ है।

होटल राजगिरह गे-गेट है जो इस टाइम बंद है जिसके बाहर एक वॉचमन खड़े हुए है लेकिन ये वाइट कलर की बिल्डिंग है उसकी बोहत सारी जाली वाली विंडो जो ऑरेंज कलर--

ये संग्रहालय की जगह है जहां पर एक आदमी को पहना हुआ है पिंक कलर का एक औरत शॉल और बच्चे को गोद में ली हुई उसके साइड में एक छो बड़ा बच्चा उसके साथ चल रहा है उसके आगे दो आदमी और औरत खड़े हो --